ये शॉप है जिसमें कुछ लोग इधर उधर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है लोग इधर उधर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह हरिद्वार क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है ये एक बड़ा गेट है इसके पास में एक नीला पर्दा टंगा हुआ है।

बाहर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है और ऊपर कुछ कार दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग इधर घूमते हुए भी दिखाई पड़ रहे है।

एक एल_इ_डी टी_वी लगा हुआ है एक बड़ा पर्दा भी लगा हुआ है ऊपर छत पर वाइट ट्यूब लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

काफी साफ दिखाई पड़ रहा है आस-पास पहाड़ पर बड़े जंगल भी दिखाई पड़ रहे हैं जो काफी ज्यादा हरे-भरे दिखाई पड़ रहे हैं।

ये एक फॉर्म दिखाई पड़ रहा है जिसमें कुछ सब्जिया लगी हुई लाइन में कतार में दिखाई पड़ रही है।

यह एक मेडिकल शॉप दिखाई पड़ रही है जिसमें अलग अलग तरह की दवाइयां रखी हुई है इसमें एक अलमीरा बनी हुई है जिसके अंदर --

यह एक गंगा नदी का दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

हाथ पकड़ के इधर उधर घूम रहे हैं कुछ लोग नदी में स्नान कर रहे हैं पुजारी अगरबत्ती कर रहा है पानी अच्छा दिखाई पड़ रहा है।

वड़ा पाव खाने का आनंद ले रहा है दो अंदर दुकान के मालिक दिखाई दे रहे हैं दुकान के बाहर रेड व्हाइट बलूंस लगे हुए हैं।